व्हाइट कलर की बस है।

एक आदमी बैठा है साथ ही--

सामने एक क्रॉस बना हुआ है चर्च के बाहर--

ये लाइब्रेरी की तस्वीर है।

एक टेबल के पास वॉटर बॉटल भी पड़ी है।

इनके पीछे कुछ बड़े पत्थर भी पड़े हैं ये पत्थरों के--

कुछ लोग अन्दर ए_टी_एम से पैसे निकलवा रहे--

पार्क में कई झूले भी लगे हुए है।